दरभंगा जंक्शन लिखा है इससे हमें पता चलता है की यह एक दरभंगा जंक्शन का के वहाँ का ट्रेन का डिब्बा का फोटो है।